एक बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बिल्डिंग में गेट बना हुआ है। नीचे दो बाइक्स खड़ी हुई है। सामने एक पेड़ लगा हुआ है। साइड में पेड़ लगे हुए है।

एक बहुत बडा सा हॉल है। हॉल मे बहुत सारी टेबल और चेयर लगी हुई है ऊपर बहुत सारे पंखे लगे हुए है साइड मे खिड़कीया है गेट है।

एक हॉल है दो काउंटर्स बने हुए है काउंटर्स मे कम्प्युटर रखे हुए है काउंटर के सामने ब्लेक कलर की चेयर रखी हुई है।

रेस्टोरन्ट टाइप है उसमें एक अ-टेब्लस चेयर्स लगी हुई है ए.सी. लगी हुए है ऊपर लाइट लगे हुए हैं कुछ लोग बैठ के बेठे हुए हैं।

चेयर्स रखी हुई है अ-तीन शटर लगी हुई है अ-साइड मे बोटल्स रखी हुई हैं उपर पंखा लगा हुआ है।

एक शॉप है जिसमें सामने क्यु.आर. कोड रखा हुआ है पीछे एक फ्रीजर रखा हुआ है जिसमें स्पराइट और भी टाइप की सोफ़्ट ड्रिंक रखी हुई है।

एक फूलो की दुकान है जिसमे बहुत सारी टाइप के फूल रखे हुए हैं लाल पीले सफ़ेद कुछ माले रखे हुए है।

एक कर्टेन लगा हुआ है लैम्प लगा हुआ है और पीछे एक सीनरी लगी हुई है।